बहोत सारे आदमी लोग बैठे हुए है देख सकते है स्टंप के बगल मे बहोत ग्रीन ग्रीन एरिया है देख सकते यहाँ पर बहुत अच्छा रेलिंग बनाया हुआ है।

भाई लोग देख सकते है यहाँ पे एक पार्क है पार्क में बहोत अच्छा पाथ बना हुआ है चलने के लिए देख सकते है बगल बगल मे बहोत सारा पौधा लगा हुआ है।

देख सकते हे ग्रीन कलर का बेंच बना हुआ हें यहा पर आप बेठ सकते हे देख सकते हे यहा पर ग्रीन कलर का पोल भी हैं।

पूजा में देख सकते हैं आप लोग बहुत भीड़ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धालु गंज--

यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पानी के फाउंटेन लगे हुए हैं बहुत तरफ से चारो तरफ से यहाँ पर पानी का फाउंटेन जो हैं झ प्रेसर मार रहा हैं देख सकते हैं।

देख सकते हैं उ कितना सारा फुल लगा हुआ है यहां पर सीढ़ी टाइप का बना हुआ हैं।

यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा टेबल भी है कुर्सी भी है देख सकते है टेबल में भी बहुत अच्छा फ्लावर का पॉट लगाया हुआ है देख सकते है पानी का बॉटल है हर जगह हर टेबल पे रखा हुआ।

यहां पर बहोत सारे भीड़ आदि आदमी आए हुए हैं देख सकते हैं उधर साइड ए_टी_एम भी है जहां वो लोग पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं।

ओन्ली वेजिटेरीअन खाना मिलता है यहाँ पर जो भी वेजिटेरीअन लोग है आप अपने फॅमिली के साथ जा करके यहाँ पर खाना खाकर आनंद उठा सकते है।

देख सकते हैं बहुत अच्छा जगह है यह लोकेशन है आप या आपको अगर यहां पर जमीन मिलता है तो आप जमीन खरीद सकते हैं घर मिलता है तो घर ले सकते हैं।

गेस्ट लॉन्ड्री हॉस्पिटल लॉन्ड्री हॉस्टल लॉन्ड्री रिटेल लॉन्ड्री देख सकते हैं लॉन्ड्री बाई के_जी एंड पीसेस यहां पर के_जी और पीसेस में भी कपड़े लेते हैं।

देख सकते हे आप तलास दो स्कूल हे यहा पर देख सकते हे बोत अच्छा जमीन क्लोरिंग भी किया हुआ हैं।

यहाँ पर बहुत सारे कार भी लगे हुए देख सकते हैं उधर हॉस्टल भी है यहाँ पर थ्रीएटर भी है और अ स्कूल के अन्दर देख सकते हैं--

यहाँ लाइट लगा भी हुआ है यहाँ पर लाइन आ रहा है देख सकते है आप बगल में हे यहाँ से दस कदम की दुरी पर सिर्फ बैंक ऑफ़ इंडिया का एक बैंक भी है आप वहा जा कर के--

सब उस किताब में से देख देख कर पढ़ाई कर रहे हैं एक सामने में जो है जीजा सुबह भी पढ़ाई कर रहे हैं एक --

तो भाई लोग देख सकते है यहां पर कोई घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रा है देख सकते है यहां पर बहोत सारे लेबर भी आए हुए है देख सकते है यहां पर कितना अच्छा बांस का--

भाई लोग देख सकते है ये एक मंदिर है यहाँ पर देख सकते है बहोत अच्छा डेकरैशन किया गया है यहाँ मंदिर मे शायद कोई पूजा उजा आने वाला है।

भाईलोग देख सकते है ये एक ज्वेलरी का दुकान है जिसका नाम है युदिक कुंदन देख सकते है यहा पर कितना अछे सीलिंग में डेकोरेशन किया गया है लाइट लगाये गये है पुरे देख सकते है बहोत सारा यहा पर--

अभी आप पहन के अपने ऊपर जंच रहा है कि नहीं देख सकते हैं उसके बाद खरीद भी सकते हैं यहाँ पर मोल भाव भी करवा सकते हैं आप लोग थोरा मोरा।

देख सकते हैं यहां पर कोका कोला का भी ऐड किया गया है देख सकते है यहां पर रेड रेड पूरा यहां पे अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं यहां पर खाने के लिए खाना--

भाईलोग देख सकते हैं यहां पर एक क्या बोलते हैं उसको मिल टाइप का एरिया बना हुआ देख सकते हैं ये उसके पीछे का साइड का व्यू है देख सकते हैं कि--

देख सकते है यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है छठी पूजा का शायद यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है देख सकते है बहोत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है छठी मैया की जय।

बगल मे एक और फल का दुकान है वो भी शायद इन्ही का है देख सकते है आप भी जाइए आप यहाँ से फल खाइए बहुत स्वादिष्ट होता है फल और सेहत के लिए--

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक अंकल जी हैं मेडिकल का शॉप है यहाँ पर देख सकते हैं।

कंपनी कंपनी के कॉपी हे आप जा सकते हे यहा से खरीद सकते हे इनका पेज में क्वाल्टी होता हे देख सकते हो आप लोग --

भाई लोग देख सकते है यहाँ पर एक अ रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट मे बहुत सारे लड़किया लोग आयी हुई है यहाँ पर अपना पार्टी मनाने के लिये।

देख सकते है सामने में बहुत जगह भी है शायद से बच्चा लोग खेल भी सकता है यहाँ पर अगर चाहे तो।

भाई लोग देख सकते है आप लोग यहा पर एक भईया जी बेठे हुए है सलोन के अंदर बाल कटवाने के लिए इंतजार कर रहे है देख सकते है एक भईया जी बाल काट भी रहे है वो सायद फोन पर भि बात कर रहे है।

देख सकते हैं आप लोग यहां से खा सकते है पानी का बोटल का भी रखा हुआ है। बहोत सारा सामान है यहां पर देख सकते है गाड़ी भी रखा हुआ है बुलेट है यहां पर देख सकते है आपलोग।